और यहां पर सीमेंट के डब्बे भी बनाए रखे हैं और यहां पे पीछे मकान भी है।

इसके अंदर घड़ी लगी हुई है इसके अंदर कुछ नोटबुक के बुक रखी हुई है यहां पे खिड़कियां भी लगी हुई है।

यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं यहां पर बड़े बड़े गद्दे भी रखे हुए हैं यहां पर चेयर भी रखी हुई है।

खीरे प्याज हरी मिर्च नींबू के साथ रखा हुआ है।

यह एक बेकरी की दुकान है यहां पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

साइड में ब्लैक कलर भी हो रखा है।

यह एक ऑफिस हैं इसके अंदर सामान रखा हुआ है।

यह एक परचून की दुकान है यहां पर सामान रखा हुआ है यहां पर पेटियां रखी हुई है गत्ते की।

तरबूजे भी हैं यहां पर चीकू भी हैं यहां पर यहां पर दुकानदार भी है।

कुछ लोहे के खंभें लगे हुए हैं। एक पोस्टर भी लगा हुआ है। यहां पे मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और यहां पर मिट्टी भी पड़ी हुई है और यह सुबह का टाइम हैं।

यह एक बेकरी की दुकान है इसमें बहुत सारी चपले रखी हुई हैं जो की बॉक्स में है यहां पे एक कैम्पर भी रखा हुआ है।

पीछे सरिए भी लगे हुए हैं यहां पर भी एक सरिया भी खड़ा हुआ है यहां पर बहुत सारे स्टेपनियां रखी हुई है जोकि सुनहरे कलर की--

और यहां पर भी रखे हुए हैं और सामने दो मकान भी है और यहां पर पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक डी_जे है इसके सामने कुछ व्यक्ति नाच रहे हैं।

यह एक होटल है यहां पर बाहर की ओर बैलून लगा रखे हैं।

और यहां पर कांच के शीशे भी रखे हैं और यहां पर कांच की प्लेटा गिलास टेबल चेयर भी पड़ी हुई हैं।

यह एक बाजार है यहां पर पकौड़ी भी बन रही हैं।

यहां पर बहुत सी भीड़ हो रही है।

यहां पर मोटरसाइकिल भी है यहां पर कुछ किताबें रखी हुई है।

यहां पे चेयर है इसके ऊपर घड़ी लगी हुई है यहां पर मीटर भी है।

और दवाई की बोटल भी रखी हुई है और साबुन भी रखा हुआ है।

कार्यालय परोजना परमन निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश जल निर्माण सहानपुर यहां पे एक गेट लगा हुआ है।

पीछे जैसे एक कार भी आ रही है यहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है।